ये तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ बहुत ही हरे -भरे कलर के दिखाई दे रहे है पीछे की ओर देखने पर आसमान बहुत ही साफ- सुथरा और सुन्दर दिखाई दे रहे हैं।

सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है और इस दुकान के अंदर मुझे बहुत सारा टमाटर गोभी और प्याज रखे हुए दिखाई दे सकती है करेला भी रखा हुआ है।

ज़मीन में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहें है जो की काफी ज्यादा हरे भरे और घने दिखाई दे रहे है।

करेलो का कलर मुझे यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा हैं और जो ये करेले रहते हैं वो सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छे हो आ बहुत ही प्यारे होते हैं और ये सेहत बनाने के लिए काम में आते हैं डाइटिंग करने के काम में आते हैं वाइट कलर की पन्नी दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर--

और यहाँ पर एक पर्दा भी लगा हुआ देखा सकता है जोकि मुझे ब्लू और ग्रे कलर कॉम्बिनेसन में दिखाई दे रहा है और ये जो अ ये जो कैरेट है कैरेट के अंदर पहले अ न्यूज पेपर रखा है और न्यूज पेपर के ऊपर कद्दू रखे गए हुए हैं।

यह तस्वीर मे मुझे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ए_टी_एम के बाहर मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर मुझे ब्लू दिखाई दे रहा।

ए_टी_एम के अंदर देखने पे एक मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है बाहर की ओर--